और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बहुत ही सुन्दर है और इधर कुछ ईटा-उटा भी है जो की बहुत ही ऊंचा है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़ियाँ है।

और ऊपर मैं कुछ यह पेड़-वोड़ लगा हुआ है यह बहुत ही सुन्दर उधर भी कुछ आदमी सब हैं जो कि बालकनी में खड़ा है और यह बहुत ही सुन्दर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है।

और इधर टावर -वॉवेर भी है कुछ जो की देखने मैं बहुत ही सुन्दर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है।

देखते है कार - उर है और उधर पीछे गोडाउन - उडाउन भी है और यहाँ पर कार वगेरा लगा हुआ है और इधर देख सकते आदमी सब भी है और यहाँ पे देख सकते है बहुत सारे आदमी सब है और इधर --